यहाँ पर एक बडा-सा तलाब दिख रहा है।

यहाँ पर एक चार पहिए की सफ़ेद कलर की गाड़ी दिख रही है।

नीचे कारपेट दिख रहा है जिसमे चेक्स बने हुए है।

और नीले कलर का आसमान भी दिख रहा है।

दुकानों में शट दिख रही है पाइप दिख रही है।

जहाँ पे बहोत सारे दवाईया दिख रही है एक अंकल दिख रहे है और एक लड़का दिख रहा है जिसने मास्क पहना हुआ है।

इस तस्वीर में एक रोड दिख रहा है एक पेट्रोल पंप दिख रहा है जिसपे सफ़ेद कलर का चार पहिये का--